एकरा पत्ता हरियर बा ई बहुत सुन्दर बा येके अगल बगल में हरियर हरियर घास बास जमल बा गाछ बा।

इ घास के ऊपर कछुआ बा कछुआ करिया बा इ कछुआ घास चरता।